यहाँ पर एक छत दिखाई दे रही है छत पर से बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी दुकान बनी हुई है दुकान के बहार कांच लगा हुआ हे।

जलेबी बहुत ही मीठी होती है ये जलेबी पोहे के साथ खाई जाती है जलेबी शादियों में भी मिलती ह --

यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुकान है इस दुकान में बड़े बड़े टायर मिलते है यहां पर एक बोर्ड लगा है।

कुर्सी पर काले रंग की पुताई की गयी है।

नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।